सामने बहुत सारी साइकिलें पार्क की हुई है उसके ठीक सामने एक पल्सर बाइक है उसके ठीक पीछे एक स्कूटी पार्क की हुई है।

यहां दो महिलाएं व्हीलचेयर की हेल्प से क्रू मेमबर की हेल्प से ऊपर जा रही हैं।

जिसमे गंगारामपुर म्युनिसिपालिटी लिखा हुआ है।

दो आदमी भीतर घुसते हुए नजर आ रहे हैं।

इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक कार पार्क की हुई है और कार पार्किंग के ठीक सामने तीन स्कूटी पार्क की हुई है।

यहां दो लहंगा दिखाई दे रहा है।

कस्टमर के बैठने के लिए सफेद रंग की सोफा भी है।

इस पेड़ को भी लाल और सफेद रंग से हल्का सा रंगा गया है।

सामने नोटिस बोर्ड भी है उसके ठीक दोनों और एक सूखी हुई पेड़ है।

रोड के इर्द गिर्द बहुत सारे दुकान हैं।

यह डैम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां रास्ते पर एक आदमी रिक्शा चलते हुए नजर आ रहा है।

ग्राउंड पर बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

सामने एक ऑटो है ऑटो के पीछे इसका डिजाइन किया गया है ताकि कुछ बेच सके उसका रंग पीले रंग से रंगा गया हैं।

पीछे एक ऑटो दिख रही है जिसका रंग लाल है और एक चक्का भी उठा हुआ है।

एक किराने की दुकान है तो दूसरा मीठे की दुकान।

यहां एक पैर पोछने के लिए रखा है।

और एक बेंच रखा हुआ है बेंच के ऊपर कुछ पुस्तक--

हर कुर्सी पर आदमी बैठा हुआ है जबकि एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस घर के ऊपर बहोत ज्यादा छड़ लगी हुई है।

यह एक क्लास रूम की तस्वीर है जिसमें एक शिक्षक खड़े होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

ऊपर अमूल्य कूल है उसके ठीक नीचे अमूल्य का लस्सी है।